मुझे काले कलर का कुछ बैग सा रखा हुआ है।

सभी मेजो पर ग्लास और एक जग रखा हुआ है।

दो दीवाल का रंग दो तरीके का है ऊपर का रंग सफेद और नीचे का रंग मेहरून कलर का है।

और कमरे में एक तख्द पड़ा हुआ है।

मैदान में एक सफेद रंग का पाइप पड़ा हुआ है।

सामने मेज है मेज पे एक पानी की बॉटल रखी है।

यहां पर चार पहिए की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर सूअर लेटे हैं उस जमीन का रंग नीला है।

यह एक अस्पताल है अस्पताल के बाहर दो शटर लगे हुए हैं।

एक आदमी खड़ा है जिसने अपनी पीठ पर लाल कलर का बैग टांगा हुआ है।

उसके पास में एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है।

उसके आगे लोहे का शटर लगा हुआ है।

गिरधारी लाल ग्वाला मिष्ठान भंडार के नाम से एक बाहर बोर्ड रखा हुआ है।

पेंट की बाल्टी लोहे की मेज पर रखी हुई है।